एक अ ऑफिस का कमरा है जहाँ पर नयी नयी कुर्सियां यहाँ पर दिख रही हैं चार कुर्सियां हैं।

अं भगवन कृष्ण की अं एक पैक्ड मूर्ति यहां पे बनी हुई है और ये मूर्ति जिसमें भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी पकड़ --

और दिवार पर कुछ गुब्बारे टंगे हुए हैं और प्लग यहाँ पे है।

हाँ और जहां ओटो लगें है ऑटो स्टेण्ड के साइड में एक कार का स्टैण्ड भी है जहां कारें खड़ी हो रख --